तीन चार घड़े रखे हुए हैं।

ऊपर एक टेबल भी है कुछ चेयर लगे हुए हैं।

छे गुब्बारे लगे हुए है व्हाइट कलर के पर्दा लगा हुआ है।

यहाँ दो बाइक लगे हुए हैं साइकल है।

इधर एक प्रिंटर है इनवर्टर है।

और उसके बगल में है होटल कार्तिक --

यहां ढ़ेर सारे बच्चे भी खड़े हैं।

इतने सारे घास भी लगे हुए है।

पीछे रैक पे ढेर सारे कपड़े भी है। और यहां लड़कियों का सामान भी है।